और दुकान के बाहर दो बाइक भी--

पर दीवारों के ऊपर जंगला बना हुआ हैं जो ब्लैक रंग का हैं दीवार की कली का--

दो पिलर जैसे बने हुए हैं दीवार के एक दीवार के ऊपर--

और सामने उनके शीशा लगा हुआ है शीशे में भी उन--

और एक पोड़ी भी लगी हुई है पेड़ के साथ--

शेड के अंदर कुछ गमले से पड़े हुए हैं ऐसा लग--

जे एक पकार पार्किंग लग रही--

पहाड़ों को बीच में हरे हरे पेड़ नजर आ रहे हैं पहाड़ों के ऊपर--